यख मा जी पीलू रंग भी छ यख एंच फुंड दिखेण लग्युं यख पिछाड़ी एक सीसा छा दिखेण लग्युं यख मा जी शेटर छा दिखेण लग्युं यख मा जी सफ़ेद अ पीलू रंग छ होयुं।

यख मा जी रेलिंग छा यख मा जी भिड़ी छा यख मा जी बिट्टु छा यख मा जी कुछ मकान छन दिखेण लग्यां यख मा जी हरयां भरयां डाला भी छन।

यम्मा जी एक हर्युं-भर्युं मैदान चा ये मैदान मा जी कई सारा लोग छन यखमा जी जु छा कुछ लोग किरकेट छन खिन लग्यां।

यख साइड फण रेलिंग छा। सामणे मा जी कई सारा मकान छन दिखेण लग्यां यख मा जी हरयां रंग कु टीन कु छप्पर भी छा दिखेण लग्युं यख मा जी कई सारा हरयां भरयां डाला भी छन मैदान का बिच मा जी एक रस्सी भी छा।

मा जी मैदान छा हरयूं भरयूं मैदान छा। यख मा जी कुछ लोग छन। सामणी मा जी कई सारा मकान छन दिखेण लग्यां रंगला पिंगला मकान छन।

यख मा जी कई सारा हरयां भरयां डाला छन यख मा जी शाम छ होण लगीं यख मा जी सूर्या की रौशनी भी छा पण लगीं।